कुछ महिला पीले रंग की साड़ि पहनी हुई वहाँ खड़ी है।

सड़क के किनारे रंगाराज सागर उद्यान पार्क सुकमा लिखा हुआ है जिसके--

सड़क के किनारे बहोत ही सूंदर मूर्ति बनी हुई है जिसके चारो तरफ हरियाली हैं आसमान--

टेलिनी डिस लिखा हुआ है जिसके साथ में दुकान है जोकि --

बुल बुले आ रहै हैं और सफ़ेद रंग का झाग बना हुआ है।

बड़ी-बड़ी चट्टाने हैं जिनमे छोटे-छोटे पीस किये हुये हैं और यह काले रंग की हैं।

इस्तेमाल किया हुआ है और लाल रंग के कार्पेट पर एक आदमी जा रहा हैं दिवार पर--

बाहर एक महिला अपनी तस्वीर खिंचवा --

भूमि पर नीचे हरी - भरी घास लगी हुई हैं और चारो तरफ़ हरियाली है पहाड़ी --

चारो तरफ लाइटिंग लगी हुई है बड़े से मैदान हैं चारो तरफ बिल्डिंग में रौनक छाई हुई हैं।

चारों तरफ बड़े - बड़े खेत बने हुये हैं और हरियाली हैं आधु पर प पानी गिरा हुआ है आस - पास --

सड़क के किनारे बहुत ही सुंदर तुगलन गालस्य लिखा हुआ है जिला प्रासन--

लिखा हैं चारो तरफ़ घर बने हुए सड़के है हरयाली हैं पत्तियों का रंग हरा हैं आस --

के नीचे बहुत सारे लोग बस के इंतजार में वहाँ खड़े है चारो तरफ --

आसपास दीवारों पर भी सफ़ेद रंग किया हुआ है प्लास्टिक की लिफाफों को अलग -अलग रंगो से --